अं गुब्बारा बैलून वगैरा लगा है।

बिल्डिंग में पूरा बहोत अच्छी तरह से लाइटिंग किया है रंग बिरंग काफी बाहर का अह रोड का हो --

अअ बाहर काफी लाइटिंग वगैराह लगा है पेड़ पौधे में--

अ ऊपर बिजली का तार लगा हुआ है।

अं लकड़ी का वही लोहे का चक्का वाली बैलगाड़ी दतारी देसी हल--

अ एक बड़ा सा फ्लैट दिख रहे हैं जिसमें फ फाइव फ्लोर --

अह जहां पीले कलर का बस दिख रहे हैं।

पेट्रोल पंप दो ठो लगा है पेट्रोल डाल--

आ ये खिलौना का स्टोर है जहां पे काफी सारे टेडी खिलौने--

फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर फोर्थ फोर फ्लोर तक दिख रहे है जिसमें एक पिक्चर का लगा कर लिफ्ट वगैरह दिख रहे है सिटी मॉल हैं।

अं ये कोई विद्यालय है जहां पे बाहर--

सिर्फ बैंक वगैरह है काफी सारी दुकानें तो बंद दिखाई दे रही है।

हां ये यहा पे सोफा लगा हुआ है।

अं ये काफी अच्छे से मस मस्जिद दिख रहे हैं जहां पर लड़के हैं।

स्कूटी खड़े हुए हैं बाइक खड़े हुए हैं अंदर बड़ा सा हॉस्पिटल --

बहुत सारी कैरेट में ये सब्जी का खेती हुआ होगा जहां से तोड़ के इसको लौकी को तोड़ कर रखे हैं।

जहां पे अगल बगल पेड़ पौधे दिख रहे हैं और बीच में मंदिर दिख रहे हैं ऊपर बादल दिख रहे हैं।

रिंग रोड नंबर वन पचपेड़ीना का रायपुर करके इसका एड्रेस दिखा रहा है।